दो पेड़ भी लगे हुए है इस दीवार से एक नाली तालाब की और जाति हुई दे रही है।

अ रस्ता दिखाईं दे रहा है जिसमें रेलिंग लगी हुई है यहाँ पे कुछ व्यक्ति भी खड़े हुए है जो कुछ काम कर रहे है जिनकी ड्रेस आदिवासी--

--खड़ा हुआ है अ इन मशीन्स के रंग सिलवर्स है।

यहाँ पे एक बुद्ध टेंपल जैसी आकृति का एक सेट बना हुआ है जिसमे सामने जाने का रास्ता है और उसमे एक साइड मे पेंगुइन की शेप वाला पुतला भी खड़ा है और उसके सामने एक--

ये एक कमरा हैं जिसमे एक मशीन रखी हुई हैं योगा करने की और एक लटकने की रोप भी रखी हुई हैं इसमे ब्लैक कलर का बॉल रखा हुआ हैं जिसपे बैठ कर एक्सरसाइज करते हैं सामने की तरफ एक अलमारी हैं जिसमे--

यहाँ पर बोहोत सारी आदिवासी अअअ समाज की कुछ कलाकृति--

ये एक शॉप है जिसमे बोहोत सारी मूर्तियाँ रखी हुई है।